एक दुकान के अंदर चारों तरफ द्वार की चटाइयाँ रखी हुई हैं। और उसके --

उनके अंदर पहियों वाली टेबल मरीजों को लेजाने के लिए रखी हुई है और एक टेबलों पर कुछ सामान भी रखा और हॉस्पिटल के अंदर जमीन पर टाइल्सें लगी हुई हैं और चारों तरफ से लाइट फिटिंग --

बिल्डिंग के सामने एक गाड़ी धरी हुई है और --

और पेड़ों में फल लग रहे हैं और फिर फलों का रंग लाल दिख रहा है।